इस तस्वीर में आप देख रहै है एक समुंद्री इलाका का सीन दिखा रहा है।

सो बहोत अच्छी दिख रही हैं लाइट भी बहोत हैं। बिल्डिंग भी बहोत अच्छी दिख रही

धान लगाया गया है यहाँ का मेंटेन बहुत अच्छा आदमी किया गया है उसके लिए धन्यवाद आप दिख रहे है।

ऊपर पर एल्बेस्टर दिया गया होली का समय चल रहा है। इसी प्रकार से होली के सीजन--

बहुत अच्छी तरह से की गई है | मेंटेन भी बहुत अच्छी उस आदमी के लिए धन्यवाद और आप भी देख रहे कैसे अच्छी है।

वो अपनी सब्जी तोलवा रहे हैं और उलेख दो आदमी अपनी रास्ते से गुजारते हुए जा रहे हैं उधर जो बटखरा मे बैठे हुए आदमी हरी मिर्च भी बेच रहे हैं और सब्जी भी बेच रहे हैं ।

इस तस्वीर मे एक मंदिर जैसा घर का सीन दिखाया जा रहा है जहां के पुजारी लग रहे हैं --

इस जगह पर एक तस्वीर दिखाई जा रही है जहा के बेहतरीन जगह दिखाए जा रहे है यह हरे पेड़-पौधे भी दिखाए जा रहे है पीछे घर भी है हो सकते है या मतलब चर्च भी हो सकते है काफी नजारे देखने में बहुत भी खूबसूरत दिख रहे है ।

यहाँ देख रहे हैं आप एक कृष्ण और राधा की मूर्ति दी गई है एक घर में है ये जहाँ का आदमी बहोत अच्छे हैं मेंटेन वेंटेन करके रखे गए हैं। कितनी शानदार से कृष्ण और राधा की मूर्ति दी गई है।

जो हाइट वाइट कलर का घर हैं और साइड से रोड भी जा रहा हैं रोड पर एक फोर व्हीलर गाड़ी भी जा रही हैं। बहोत देखने में सुन्दर--

हमें तो नहीं पता लेकिन ई देखने में काफ़ी खूबसूरत दिख रहे हैं जितना इसका तारीफ किया जाए उतना ही कम है।